परदा लगाया गया है और साथ में बहोत सारे गमले पड़े हुए हैं।

और ब्राउन सनमाइका से और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ है जो पर्दे हैं।

उसके बाएं साइड में एक ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और उसके पीछे विंडोज लगी हुई हैं।